इस तस्वीर में कुछ लोग घर का काम कर रहे हैं।

रोडी है सिमेंट के कट्टे हैं और दो लोग जो की सिमेंट का काम कर रहे हैं।

टेबल है जिसका रंग सफेद है यह लकड़ी की है आस पास काफी सारी चीजे हैं पंखे लगे हुए --

जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा--

आसपास बैठने के लिए चेयर रखी हुई है दीवार का कलर सफेद है और उसपर ऐ_सी लगा हुआ है।

नीचे टाइले बिछी हुई है और आसपास का डेकोरेशन काफी सुंदर है कांच का गेट बना हुआ --

इस टेबल पर बहोत सारे सामान रखे हुए हैं लैपटॉप है डायरी है पेन है।

आस पास काफी सारे ए_सी दिख रहे हैं लाइटिंग का भी बहोत अच्छा वर्क है।

इस फोटो में रात का समय दिखाया है आस पास काफी सारे घर बने हुए है घर के बाहर --

उस घर के दीवार का कलर सफेद है।

दीवारों पर काफी ज्यादा लाइटिंग का काम हो रखा है एक कट्टा दिख रहा है।

इस कमरे की दीवार का कलर सफेद है ऊपर लाइटिंग का काम काफी अच्छा है और कुछ गेट बने --

ये देखने में काफी सुंदर दिख रहा है नदी के बीच में एक नाव दिख रही है।

आसपास और भी पेड़ दिख रहे हैं देखने में काफी सुंदर जगह है।

दीवारों पर कागज चिपके हुए हैं एक औरत दिख रही है और एक आदमी बैठा हुआ है।

ये गार्डन काफी ज्यादा सुंदर सजा हुआ है देखने में भी काफी बड़ा दिख रहा है।

इस तस्वीर में कुछ लोग लाइन बनाए हुए हैं।

ये तस्वीर एक गार्डन की है जो की देखने में काफी ज्यादा सुंदर और अच्छा लग रहा।

जोकि सड़क किनारे हैं वहां दो बाइक खड़ी है एक बाइक में हेलमेट भी रखा --